पार्क है जहाँ पे एक वाइट कलर का राइनो हेगा उस पे बच्चे बैठ रहे हेंगे दो आदमी खड़े हुए हेंगे नीला-नीला आसमान हेगा पानी हेगा फव्वारे हेंगे हरे-भरे पेड़ हेंगे छोटी-छोटी घासें भी हेंगी।

छोटा सा तालाब हैगाजहाॅं पर पत्थर हैंगे बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर हैंगे नीला-नीला आसमान हैगा हरे-भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

पटरी हेगि सामने ख़ाई जिसपे कोई भी ट्रेन नही हेगी और बॉर्डर बनी हुई हैगी पीले और हरे कलर ---

छोटे-बड़े पेड़ हैंगे फूल भी लगे हुए हैंगे छोटे बच्चे ड्रेस पेहेन के बैठे हुए हैंगे नीली कलर की कुछ नीचे ब कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए है।

स्टेशनरी है ये जहाँ पे बहुत सारे पेन रखे हुए हैं पेंसिल रखी हुई हेंगी स्टीकर्स लगे हुए हैं गम लगे हुए हैंगे स्केल्स रखे हुए हैंगे।

पेंसिल्स रखे हुए हैंगे स्केच कलर रखे हुए हैंगे मोम कलर रखे हुए हैंगे।

ये दो गाड़ी हिय एक हरे कलर की एक नीली कलर की रखे हुए है दो हेलमेट रखे हुए है एक काले के एक नीले कलर के।

एक दुकान है जहां पर सामने एक डमी खड़ी हुई है ऑरेंज कलर का कुर्ता पहन के काले-काले उसके बाल हैं क्रीम कलर का प्लाजो पहनी हुई है ये -----